दीवाल के ऊपर भी रेक्स पर कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक गार्डन या किसी शिव होटल का फोटो दिख रहा है।

हां लग रहा है जिसे दीवाल का पलास्तर कर रहा है।

यह एकदाम मदनी रेस्टोरेंट है। जहां लाइट्स है। भारत की चिन्ह का और वह लगा हुआ है टैटू ।

स्पीकर जैसा एक सी_पी_यू जैसा कुछ दिख रहा है।

पीछे एक आदमी ने गेट खोलकर उसे बैठा हुआ है नीचे--

यह एक अ अ वर्कशॉप दिख रही है जहाँ गाड़ी को वाश कर रहे है या फिर उसको सुधार के उसमें हवा-ववा भर रहे है।

यह एक बिजनेसमैन का ऑफिस दिख रहा है अ ऊपर लाइट्स दिख रही है पेड है।

यह एक नदी दिख रही है जिसमें --

वो दिख रहे हैं दूर दूर तक भी पत्तियां ही दिख रही हैं।

कुर्सी पे बैठ के इधर टेबल पर सामान रखा हुआ है।

और एक टेबल पर मोबाइल जैसा कुछ दिख रहा रखा हुआ।

जिसमें एक नाव हैं इसपे तिरंगे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर्दे वर्दे दिख रहे है कुर्सियां है।

यह कोई सी मिल दिख रही है जहां बोरियां रखी हुई है अह गाड़ी भर रहे हैं कुछ लोग।

और कुर्सी है बैठने की ताला लगा हुआ दिख रहा बहुत दिनों से।

पेड़ पौधे लगे हुए है पाइप दिख रहा अंदर एक--

गेट खुला हुआ जैसा लग रहा है अंधेरा दिख रहा कुछ साफ दिखाई दे रहा पेड़ पौधे लगे हैं आईट साइड में--

और उधर भी फ्लावर पॉट्स सजाया हुआ है।

यह एक क्लासरूम दिख रही है जहां डिजाइंस की टेबल बनी रखी हुई है।

वह वो रखी हुई हैं टॉफिस वगैरा--

ऊपर भी कुछ हंस बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

खिड़कियां खुली हुई दिखाई दे रही है एक खिड़की बंद है इधर की पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जहां बच्चे बाहर खेल रहे है कुछ बच्चे खड़े है।

पीछे माइक का पोस्टर जैसे रखा हुआ है पेपर पोस्टर जैसा--

यह भैंस का तबेला है जहां दो भैंसे दिख रही घास खा रही पीछे गाय हैं एक आदमी भी दिख रहा है।

अ उधर पेड़ के पास किसी चीज का बंडल टंगा हुआ है रस्सी वगैरा का कु--